यह फ़ोटो मुझे एक गरेज की नजर आ रही है यहाँ पे मुझे बहुत सारी गड़िया दिखाई दे रही है।

यहाँ पे मुझे किलनेटिक सेंटर ई दे रहा है जो की अभी अभी चालू हुआ है।

एक ब्लू और व्हाइट कलर की और प्री ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पे मुझे एक व्हाइट कलर की कार भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग खड़े एक दूसरे से बातचित करते हुए दिखाई दे रहे है।